how to use opac पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि search का उपयोग करके item कैसे ढूँढना है
और advance search का उपयोग करके item कैसे ढूँढना है
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको library science का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
और आपको koha पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
शुरू करने के लिए मैंने microbiology पर 2 और पुस्तकें जोड़ी हैं
पहला लेखक powar and daginawala और दूसरा लेखक heritage के साथ
मेरी library में कुल 3 किताबें हैं
आगे बढ़ने से पहले कृपया अपनी library में अपनी पसंद की 2 और पुस्तकें जोड़ें जैसा कि पहले के tutorial में समझाया गया है
अपना web browser खोलें और
यह url संस्थापन के समय दिए गए port number और domain नाम पर आधारित है
कृपया जो आपने उल्लेख किया है उसके अनुसार टाइप करें अब enter दबाएँ
होमपेज welcome to spoken tutorial library खुलता है
ऊपरी बाईं तरफ search पर क्लिक करें
search फिल्ड में library catalog ड्रॉप डाउन से हम निम्न ऑप्शन्स द्वारा सर्च कर सकते हैं:
title author subject isbn series और call number
मैं search फिल्ड में microbiology टाइप करूंगी
और फिल्ड के दाईं और go पर क्लिक करें
सभी library items शब्द microbiology रिजल्ट्स में सूचीबद्ध है
search word के साथ सूचीबद्ध items को यूजर की पसंद के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है
ऐसा करने के लिए सूची के दाईं ओर जाएं और relevance टैब पर क्लिक करें
ड्रॉपडाउन से मैं author az चुनुंगी
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य संबंधित ऑप्शन चुन सकते हैं
author az चुनने पर authors की एक सूची वर्णानुक्रम में प्रदर्शित होती है
सूचीबद्ध items के शीर्षक के नीचे देखें यहां हम सभी लाइब्रेरी में उस विशेष आइटम की उपलब्धता देख सकते हैं
तो हम बेहतर परिणामों के लिए अपना सर्च कैसे सुधार सकते हैं
हम बाईं ओर refine your search टैब पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं
फिर निम्न सेक्शन्स के तहत विभिन्न टैब पर जाएं:
अब देखते हैं कि यदि आवश्यक सामग्री सामान्य खोज के साथ नहीं मिलती है तो क्या करना है
search catalog पेज पर advanced search पर क्लिक करें
शीर्षक search for नामक नया पेज खुलता है
एकाधिक ड्रॉपडाउन ऑप्शन्स का उपयोग करके हम अपनी आवश्यक सामग्री के लिए अपने search को परिष्कृत कर सकते हैं
बाईं तरफ के पहले ड्रॉपडाउन से उपयुक्त ऑप्शन्स का चयन करें जैसे कि:
मैं subject चुनूँगी
और दाईं ओर के फिल्ड में बाईं ओर ड्रॉपडाउन से चयनित ऑप्शन का विवरण टाइप करें
मैं यहाँ microbiology टाइप करूंगी
दूसरे ड्रॉपडाउन ऑप्शन का उपयोग करके मैं author में patel चुनूँगी
तीसरे ड्रॉपडाउन ऑप्शन का उपयोग करके मैं publisher में pearson चुनूँगी
उसी पेज पर सेक्शन item type में अन्य ऑप्शन्स देखें
book
reference
और serial
ऑप्शन्स का पालन करें publication date range language और sorting
तो item type सेक्शन में मैं books के लिए रेडियो बटन पर क्लिक करूंगी
मैं publication date range खाली छोड़ दूंगी
language में ड्रॉपडाउन से english चुनें
sorting सेक्शन में sort by में मैं author az चुनूँगी
सभी विवरण भरने के बाद पेज के नीचे search पर क्लिक करें
इस पेज में निम्नलिखित सभी items की सूची होगी:
author में patel arvind h
publisher में pearson
अब advanced search पेज पर वापस जाएं और search for सेक्शन के नीचे more options बटन पर क्लिक करें
ऐसा करने पर advanced search पेज का लेआउट बदल जाता है
एक बार फिर पहले ड्रॉपडाउन में मैं subject चुनें
फिर मैं microbiology टाइप करूंगी
अब ऑप्शन्स की दूसरी पंक्ति पर आएँ
पहले ड्रॉपडाउन में मैं ऑप्शन and को ऐसे ही रखती हूं
और दाईं ओर ड्रॉपडाउन में मैं author चुनूँगी
फिर इसके दाईं ओर मैं patel टाइप करूंगी
इसके बाद विकल्पों की तीसरी पंक्ति पर आओ पहले ड्रॉपडाउन में मैं or ऑप्शन चुनूँगी
और दाईं ओर ड्रॉपडाउन में मैं author चुनूँगी
फिर इसके दाईं ओर मैं heritage टाइप करूंगी
सभी विवरण भरने के बाद सेक्शन के नीचे search बटन पर क्लिक करें
यदि आवश्यक हो तो आप नीचे search ऑप्शन का उपयोग कर सर्च का विस्तार कर सकते हैं
इस प्रकार हम लाइब्रेरी में opac का उपयोग करके आइटम्स को सर्च कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि यूजर आसानी से लाइब्रेरी आइटम कैसे सर्च कर सकता है
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँचते हैं
संक्षेप में
और advance search का उपयोग करके आउटम ढूँढना
नियतकार्य के लिए
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
कृपया इस फोरम में अपने प्रश्नों को पोस्ट करें
spoken tutorial project एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद